ये चारो ओर से रैलिंग उठी हुई है और रैलिंग दिखने में बहोत ज्यादा सुंदर लग रही है। एक गमलो में फुल भी खिले हुए दिखाई पर रहे हैं। ये स्कुल बन भी रहा है। कुछ घर बन भी रहा है बहोत सुंदर भी लग रहा है देखने में --

इसके यहाँं पे ये फार्च्यून की दुकान है। यहाँं पे चिप्स वगेरा मिलते हैं। यहाँं पे यहाँ पे कैंडी वगेरा भी मिलती हैं और यहाँं पे चोकलेट वगेरा भी मिलती हैं।

हरे बना हुआ है यहा पे कुछ लोग भी दिखाई पड़ रहे है जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं यहां पे चौराहा चौराहा भी लगता है और यहाँ पे में खड़ी हुई कूड़ेदान की पेटियां भी रखी हुई बाहर दिखाई पड़ रही --

इसके पड़ोस में एक बिल्डिंग वगेरा बनी हुई है देखने में बोहोत अच्छी सुन्दर लग रही है यहाँ पर कुछ लोग भी दिखाई --

जो सामान को खरीद भी रहे हैं कुछ लोग बेचते हुए पड़ दिखाई पड़ रहे हैं। आगे यहां पर टीन पड़ी हई है वो साफ़ नजर आ रही है। बड़ा बड़े बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। यहां पर कुछ बड़े-बड़े शब्दों से लिख --

ये दुकान है। दुकान इसपे केक वगैरह मिलते हैं जैसे आइसक्रीम है केक है बर्गर है चॉकलेट है। इसकी ये सब चीज मिलती है। दुकान देखने में बहोत ज्यादा सुंदर है और इस --

एक उसका बाप भी बैठा हुआ दिख पड़ रहा है वो कुछ पढ़ रहा है यहाँ पर विंडो वगैरहा भी लगी हुई है यहाँ --